यहाँ पे दो ऑटो जाते हुए दिख रहे है और सामने से एक --

जो पेट्रोल भरने के लिए ही आए हुए है।

व्यू दिख रहा है ऊपर की और जो निचे से लिया हुआ है। --

और वो एक व्यक्ति हैं जो ऊपर की ओर चढ़ रहे है और गेट से भी बहोत से लोग --

और वहाँ पर बीच मे एक पुलिस के ड्रेस मे एक व्यक्ति खड़े हैं।

और होटल का फ़ास्ट और सेन्ड फ्लोर है।

वो सामने सीढियाँ बनी हुई है जिससे दो लोग अंदर की ओर जा रहे है।

और जो पेड़ है वही हैं।

क्योंकि यहाँ सफ़ेद चुना डालकर निशान बनाये गए हैं।

और आस-पास में भी कुछ ईंटे अलग-अलग जगहों पर पड़ी हुई दिख रही है।

और यहाँ पीछे एक अग्नि सामक यंत्र भी टंगा हुआ है।

एक महिला ने लाल कलर साड़ी पहनी है दूसरी महिला ने गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हैं।

एक बच्चे ने एक और बच्चे को गोद में उठाया है।

जो आधे पर उजाला है आधे में अंधेरा है।